इसमें इसका एड्रेस मुझे दिख रहा है। दो हजार बँक स्ट्रीट करोल बाग न्यू दिल्ली डबल वन --

सामने डेस्कटॉप भी है स्विच भी है और उसपे टेबल अ टेबल में न्यूजपेपर है।

इस फोटो को देखने में मुझे किसी वेयर हाउस की जगह दिख रही है।

अअ समान मुझे देख रहे हैं जैसे पेन पेंसिल बुक --

फोटो में मुझे एक शॉप नजर आ रही है जिसमें एक शॉप में एक अ किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं।

जो कि यह स्टेज फूलों से सजा हुआ है इसका बैकग्राउंड जो है वो अह जो कि एक पर्दे से जो कि कवर है।

इस पिक्चर में मुझे अ ट्राइबल आर्ट की पिक्चर दिख रही है।

रेलवे प्लेटफार्म में मुझे ट्रेन आती हुई दिख रही है।

और एक टेन्ट भी लगा हुआ है जिसकी ऊपर साइड में ब्लू कलर की पट्टी है।

ये पिक्चर में मुझे एक दरबार बिरियानी नाम से एक शॉप मुझे नजर आ रही है।

इस पिक्चर को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लोग किसी अधिकारी के पास अपनी बात रख रहे हैं।

और इस पिक्चर में मुझे बैलून नजर आ रहा है एक पर्दा नजर आ रहा है और एक घड़ी भी नजर आ रही--

लाइट नजर आ रही है जिसके सेंटर में रेड कलर्स है जोकि मुझे दिख रहा--